और नीचे की साईड पे रेलिंग लगा हुआ है ऊपर बिजली का बड़ा सा --

और चर्च के पीछे जीजस--

सामने एक बड़ी सी घड़ी दिखाई दे रही है।

और दिवार पर लाल कलर है।

जिनका सफ़ेद और काला कलर दिखाई दे रहा है।

बस के अंदर पिले कलर का बल्ब है।

और बस के ऊपर लाल शब्दो मे मनीष लिखा हुआ है।

बड़े से बिजली के खम्बे लगे है जिसमे बहोत सारे--

और एक जग लेडीज जिसने लाल साड़ी पहिने है वहाँ खड़ी है।

कुछ पेड़ो की पत्तिया दिखाई दे रही है जो हरी है।

पब्लिक बैठी हुई है सामने एक मछवारा है जिसके हाथ में--